यहाँ का फूल बहुत ही फ्रेश है और फूल में बहुत --

ये हमारे इलाका का एक ओवरब्रिज का --

इलाका का लोग इस बुक के स्टॉल से बुक खरीदता है |

जगह भी है यहाँ पर ज्यादातर लोग पूजा देने के लिए --

ये हमारे इलाक़ा का एक नदी हे।

बेल्ट जर्सी अंडरवियर सब कुछ मिल --